यहां बहुत सारे आदमी हैं जो लुंगी पहने हुए हैं।

सामने बारकोड रखा हुआ है छोटा सा कार्टून है।

एक आदमी किताब निकल रहा है एक आदमी झुक के किताब निकल रहा है।

और वे बरस बने हुए हैं।

ये एक धर्मशाला की तस्वीर है जिसका नाम रॉयल प्लेस है।

तीन आदमी गढ्ढे की ओर देख रही एक आदमी पेपर पड़ा हुआ है।

जहां बड़े बड़े गेट लगे हुए है।

यहां बहुत सारे आदमी योगा कर रहे हैं।

सामने छोटे छोटे घास उगे हैं।

मिट्टी की मैदान है यहां पर--

सामने कचरा फेंका हुआ एक आदमी टेबल पे बैठा हुआ है कुछ आदमी खड़े--

एक औरत जो चल रही है।

ग्रीन कलर का भी बस लगा हुआ है।

दो बाइक सवार आदमी है दो ड्रम रखे हुए है एक बाइक रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं अगल बगल।

एक आदमी जो हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं और सादे रंग का सेट और मे जींस पहने हुए--

एक ब्लू रंग का टी शर्ट पहने हुए हैं और लूंगी लगे हुए और बहुत सारे इंटे नीचे बिछी हुई हैं।

और एक औरत जो साल पहनी हुई है एक आदमी जो रिक्शा चला रहा है।

सामने कैडबरीज रखा हुआ है शीशे के अंदर।

ये एक होटल का तस्वीर है जहां टेबुल कुर्सी रखी हुई है टेबुल के ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है।

एक ये आदमी और औरत की तस्वीर है आदमी सूट पहने हुए औरत साड़ी पहनी हुई है।

सामने बहुत सारे पेड़ उगे हैं और बहुत सारे आदमी हैं।

सामने तीन चार गेट बने हुए हैं।

कुछ आदमी सामने खड़ी हुई हुए है एक औरत जो जींस पहने हुए सामने की ओर जा रही है।

नीचे फर्श बिछा हुआ है जो गे ब्राउन कलर का है।

डेस्क का कलर ब्लू है।

ये एक कार की तस्वीर है कार का नंबर यू_पी सिक्स फाइप बी_बी सेवन थ्री नाइन थ्री है।

ये एक शादी समारोह का सीन है।

तीन बल्ब है जो बड़े बड़े हैं।

एक कार्टून रखा हुआ है।

बिल्डिंग का रंग ब्राउन है और बिल्डिंग में खिड़कियां बनी हुई है।

ये एक वोल्टास का शोरूम है।

महजिद का में फर फर्श बिछा हुआ है जिसका रंग हरा और मरून है।